ये एक अस्पताल है। एसडी मेडिकल रिसर्च सेंटर है। दो लोग हैं। आगे पीछे पेड़-पौधे हैं। कलर जो है --

वह व्हाइट कलर का है। कान से बना बहोत काम है। जमीन है। तारे हैं। ब्लू कलर का है।

देख सक --

बीज बुक सेंटर है। सामने एक गाय बैठी हुई है। किताब की दुकान है। सेंटर के ऊपर सेंटर लिखा हुआ है। हिन्दी मे भी लिखा हुआ है। इंग्लिश भी लिखा हुआ है।

हरे कलर की है। उसके ऊपर एक फूल जैसा बना हुआ है। एक ही ट्रेन पूरे पटरी पर है। आस-पास कोई लोग नहीं है।

यह एक मैदान है। मैदान हरे रंग की है। घास-फूस भी दिखाई दे रहा है। आसमान का कलर ग्रे है। बहोत सारे लोग हैं।

कुछ भी दिखाई दे रहे हैं। आस-पास सड़के भी हैं। मैदान के नीचे-नीचे घास हैं। की है।

सा लग रहा है। जमीन का ग्लास जो पूरा ग्रीन है। आसमान पूरा स्काइ है। एक बार्डर है। आस पास पेड़ हैं। घर है। सूर्य चाँद--

बहोत सारे लोगों की भीड़ हैं सड़क पर। महिलाये संग हैं और धोती गमछा शर्ट पगड़ी पहना हुआ है।

एक मंदिर की तस्बीर लग रही है। आसमान पूरा नीला है। कुछ लोग सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। सीढ़ी बहोत ऊची है। बहोत सारी सीढ़िया भी हैं।

यह कार पार्क है। कार ग्रे कलर की है। सामने का जो गेट है वो बंद है। यह पार्क सा लग रहा है। पूरी हरियाली लग रही है ग्रे है। तार ऊपर से जा रहा है।

ये गांव का सीनरी लग रहा है। एक व्यक्ति है मोटा सा जो टी-शर्ट पहना हुआ ब्लैक ब्लू जींस पहना हुआ है। कुर्सी बैठ हुआ है। एक व्यक्ति मोबाईल की ओर देख रहा है।

घर है। घर सीढ़िया बनी हुई हैं। घर की सड़के बड़ी साफ सुथरी हैं कलरफुल है।

ये पूरी सड़क है खाली दो व्यक्ति जा रहे है बस हैं।

जो कलर है दीवारो के वही डिसकलर है। येलो व ग्रीन में है। रंग उखड़ी हुई है। कु कु खास लोग आस पास में नहीं हैं।

जो सेल्फ़ी ले रहा है दोनों हाथ पॉकेट मे है शर्ट व्हाइट और ग्रीन कलर का पैन्ट हैं पीछे पूल हैं सीढ़िया बनी हुई हैं बगल मे पानी हैं।

हरियाली सी घास है।